-- के आस पास बोहोत सारे खम्बे लगे हुए है छोटे छोटे बोहोत सारे अम अम बादल दिखाई दे रहे है जोकी सफेद और नीले दिखाई दे--

आस-पास बहुत सारे हरे-पेड़ भी लगे हुए है जोकि हरे- भरे दिखाई दे रहे है आस-पास बहुत सारे अम बादल भी छाये हुए है जोकि बहुत सुंदर दिखाई दे रहे है और बहुत सारे रंग-बिरंगे झंडे भी लगे हुए हैं।

आस पास बहोत सारी लाइट भी लगी हुई है उसके बहोत सारी खिड़की भी है और बहोत सारे दरवाजे भी है एक बड़ा गेट भी लगा हुआ है जिस पर बहोत सारे लोग मोमबत्ती रख कर जा रहे है और डिब्बे भी बने हुए है जिसके ऊपर से मोमबत्ती रखी हुई है।